एक सी यू बी ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है।

एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है |

एक सर खड़े हुए दिखाई दे रहे है दो चैनल गेट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और --

एक ठेला दिखाई दे रहा है जहाँ पे कई सारे टमाटर भिंडी प्या --

और नीले कलर की ट्राली दिखाई दे रही है।

टमाटर लाल दिखाई दे रहा है।